जिसमें कुछ मुर्गियाँ और बकरियां खड़ी हुई नज़र आ रही हैं तथा एक बच्चा देख रहा है।

यह चित्र एक बहु मंजिला भवन का दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक बड़ा-सा मैदान पड़ा हुआ है।

इस चित्र में सड़क के ऊपर एक ऑटो खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में इस भवन में एक ए_टी_एम की दुकान नज़र आ रही है। जहाँ --

तथा कई प्रकार की पुस्तकें और पेन कॉपियाँ पेंसिल रखी दिख रहीं हैं।